बहुत सारे तार फैले हुए हैं।

मुझे यहाँ पर बगल में एक मदरसा दिखाई दे रहा है जो --

और उसके सामने मुझे यहाँ पर कुछ रख --

पीछे की तरफ बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे हैं ऊपर --

दे रहे हैं जिसमें फूल लगे हुए हैं। सामने की तरफ पांच गमले दिखाई दे रहे हैं।

हल्का आसमा हल्का गुलाबी --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

ऊपर की तरफ असमान दिखाई दे रहा है। जो कि --

यहाँ पर हल्की हल्की सी घास नज़र आ रही है।

ईटें की रंग की तरह गेरुवा रंग के दिखाई दे रहे हैं जै --

दिखाई दे रहा है। छत पे रंग-बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं।

मुझे यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर बहुत--

मुझे यहाँ पर एक बनता हुआ घर दिखाई दे रहा है। उपर की तरफ दीवारें दिखाई --

खड़े हुए हैं। ऊपर की तरफ लोहे दिखाई दे रही हैं कुछ लोग --

रोडवेज बसें खड़ी हुई हैं। बस का कलर कुछ लाल सफ़ेद --

सफ़ेद कलर की लाइटे लगीं हैं। कुछ --

पीले रंग का पोस्टर लगा हुआ और नीले रंग से लिखा हुआ है जे.डी. ।

खुली हुई खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं पीछे की तरफ और भी एक बिल्डिंग है।

चीजे रखी गई हैं। ऊपर की तरफ छत दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दो लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

दिखाई दे रहा है जो की आसमान का कलर इस समय --

तपक की कुछ पत्तियां रख रखी हैं। पीछे यह औरत दिखाई दे रही है। एक ने लाल कलर --

मुझे यहाँ पर डॉक्टर्स का ऑपरेशन थिएटर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर के --

तरफ कुछ डस्ट्बिन कुछ मशीन कुछ आक्सिजन मशीन --

लाइटें नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। छत दिखाई दे रहा है। छत पे भी कुछ लाइटें लगी हुई --